इसमें कुछ लोग प्लंबर का काम करते हुए दिखाये गए हैं जो कि ये छत को ऐसा लगता है कि ठीक कर रहे हों छत हो सकता है एक बार टूट गई हो।

एक रेलवे लाइन का ये सीन दिखाया गया है इसमें कुछ अं डब्बे हैं जोकि मालगाड़ी के डब्बे हैं।

और अलग चारों साइड में इसमें पेड़ खड़े हुए हैं बाहर एक डस्टबिन के लिए कुछ डस्टबिन का डब्बा भी रखा हुआ है और कुछ मकान है जिसमें हरियाली कुछ दिख रही है।

एक सर्कस टाइप का एक सीन दिखाया गया है।

एक सीन पार्किंग अं बैठने की जगह का है यहां पर अं आदमी आराम से अं बैठ सकते हैं और कुछ --

एक सीन किसी गांव का लग रहा है जो की जर्जर मकान का है जर्जर मकान को देखकर के ये आदमी देख ही रहा है कि हां ये बहुत पुराना मकान है।

एक सीन दिखाया गया है जिसमें एक आदमी की परछाई दिखाई दे रही है जो कि मेन रोड पर चलता हुआ आदमी --